एक इनकम टैक्स ऑफिस है जिसमें सफेद कलर के पेंट पोते हुए है और एक--

और गेट के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है और अरे घास जमे हुए हैं और बगल में एक मकान भी बना--